तस्वीर के अंदर एक फैक्ट्री नजर आ रही है जिसके अंदर मेरे को एक नीला गेट भी दिखाई दे रहा है।

तस्वीर एक ऑफिस की है।

तस्वीर एक गन पॉइंट की नजर आ रही है।

यहां पेर सफारी का काले रंग का बैग भी दिखाई दे रहा है।

तस्वीर के अंदर क्लास रूम दिखाई दे रहे है।

तस्वीर के अंदर एक दुकान नजर आ रही है।

तस्वीर के अंदर शादी का फंक्शन दिखाई दे रहा है।

यहां पे मुझे सफेद रंग के गुलदस्ते भी दिखाई दे रहे हैं।

तस्वीरें एक मस्जिद के सामने की हो सकती हैं।

तस्वीर के अंदर एक कैंटीन नजर आ रही है।

और यहां पे के और उल्टा एन छपा हुआ है।

इसमें ऊपर सर्टिफाइड प्री ओंड लिखा हुआ हैं।

एक व्यक्ति लाल रंग की सूटकेस को ले के जा रहा है।

पीछे बहोत सारे पेड़ भी दिखाई हमें दे रहे हैं।

बस में गुलाबी कपड़े पहने एक आदमी उतरता दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक नीली साड़ी पहनों को रखीं फोटो पोस्टर में लगी हुई हैं।

तस्वीर में एक पहाड़ दिखाई दे रहा हैं यहाँ पे दो व्यक्ति पहाड़ के नीचे फंसे हुए हैं।